आ पर बहुत सारा सूर्यमुखी का फूल है ।

और उसके ऊपर एक नीले कलर का टावल है।

ओर नीचे गाजर लहसुन प्याज बैंगन फूलगोभी नींबू ये सब दिख रहा है ।

और सीढ़ियों से अंदर जाकर एक लंबा सा बेलकोनी दिख रहा ह --

तीन व्यक्तियाँ खड़ा हुआ है दुकान के बाहर एक लाल कलर का डस्टबिन है।

ओर स्टोन सब देख कर आ जो मिश्रण बनता है उससे हमारा घर बनता है |

ओर यहा अंदर बहुत सारा पिलर है।

यहाँ पर यूको बैंक का एक अअ पिक्चर है यू --

ये सभी लड़कियाँ सफेद कलर का चूड़ीदार और लाल रंग का दुपट्टा पहने हुए है।

जमीन पर सभी बच्चे यहाँ बैठ कर ड्राईग प्रकटिस कर रहा है |